बच्चो के पीछे गमला रखा हुआ है।

बच्चे दिख रहे हैं जो की पीले कलर की--

बैठे हुए है मंदिर का जो मैन गेट है वो लाल कलर का है ।